इसलिए यहां पे ये अ नर्सरी बनी हुई है।

जेंट्स कपड़े हैं जोकि मतलब शादीयों में पहनते हैं जैसे शॉर्ट है कोट है और जैकेट्स है।

और कुछ पीछे एक दरिया जैसा नजर आ रहा है।

कैंप में जाना अह ज्यादा बैटर होता है अच्छा भी होता है कैंप में जाना।

एल_इ_डी स्क्रीन्स भी लगी हुई है। साइड में केविन की है अंदर डैशबोर्ड भी बना हुआ है।

ये किसी शादी का पंडाल नजर आ रहा है शादी के लिए तैयार किया हुआ है यहां पे बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है डेकोरेशन किया हुआ--

खाना भी ढाबों का बहुत टेस्टी होता है।

दिख रहा है और इस में सुपार मार्केट में तो आप को पता ही सब कुछ मिल जाता है देन ग्रॉसरी वगैरा हर चीज के लिए अवेलेबल होता है।

ट्राउजर्स नजर आ रहे हैं बहोत सारे कस्टमर भी नजर आ रहे है हो सकता है ज़ुडियो या कोई अच्छा शोरूम--

ये किसी चीज के लिए पंडाल बना के रखा है शायद कुछ पर्सनस भी नजर आ रहे आगे सीट्स भी नजर आ रही है रेस्टुरेंट वगेरा तो कुछ नजर नही आ रहा--

दिखे तो बहोत अच्छा आ रहा है कलर वलर बहोत सुंदर कलर है।

यह की शॉप है पर्दे नजर आ रहे हैं पर्दों के कलर वगैरह भी बहोत अच्छे हैं लाल कलर हैं पीला है गुलाबी है।

ब्लू है पर्पल है अलग अलग तरीके के अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं।

ये तेजा बुक स्टॉल है बुक स्टॉल मतलब किताबों की दुकान।

कि एक फ्रूट मार्केट का फोटो है फ्रूट में फ्रूट्स जो बाजार से आते हैं और तरह तरह के हम लोग खाते हैं।

कुछ मुझे लगता है शैंपू वगैरा भी इसमें रखे हैं।

और अंदर शायद फॉल्ट भी होगा दीवार टूटी हुई जैसी है बहोत पुराना खंडहर जैसा नजर आ रहा है पौधा एक पौधा भी इसमें उगा है।

इंडिया पे बता रहे हैं कुछ बहुत सुंदर दिख रहा है।

धान के ऐसे खेतों में पानी भर के हम चावल उगाते हैं। शायद हो सकता है बारिश का पानी भर गया हो उसका फोटो है।

हॉस्पिटल दिख रहा है पर पेशेंट नहीं है पर हां दिख रहा है कि हॉस्पिटल ही है हॉस्पिटल का लुक अलग से पता चल जाता है वैसे भी।